और ये कपड़े का दुकान अंदर में बहुत सारे कपड़े भी रखे गए है डिज़ाइनर डिज़ाइनर और अंदर मैं घर नहीं देख रहा है और मूर्ति पर रखी गई है साइड में कपड़े का बहुत अच्छा नजारा देखने को मिल रहे हैं।

जो कही लोडिंग मे जा रहे है और इधर बहुत बड़ा बड़ा पिलर भी उठाए है और फैक्ट्री मे काम चल रहे है बहुत अच्छा काम चल रहे है और गाड़ी भी लगा हुए हैं।

ये जैसे लग रहा है कोई हेयर कटिंग स्टाइल है ये एक सेलून है जो बहुत सारे क्रीम भी रखे गए है और ये लड़का बहुत अच्छा बहुत डिजाइन किए गए हैं।